ये बोहोत बड़ा बंगला है और ये बंगला बोहोत ही ज़ादा अच्छा है और ये बंगला वाइट कलर का है और आगे बोहोत पेड़ पो --

ये टोटो है ये टोटो रेड कलर का है अ तीन चक्के है आगे लाइट है और पीछे इंडिकेटर है और एक यहाँ इससे हमे एक जगह से दूसरी जगह जाने में सहायता होती है| ये टोटो बहुत अच्छा है और ए --